मेट्रो में भी कोई लोग बैठे खिड़कियां हैं।

स्टॉल लिखा है कॉफी स्टॉल ।

ओपन है। यहां पे कोई सारे लोग खड़े हैं। एक ऑटो है।

यहां पे कुछ लोग कर रहे हैं फैंस हैं।

बहुत कुछ सारी शीशे बॉटल भी है।

एक पकड़े हुए खड़ा है।

यहां पे बहुत सारी कुछ शीशे हैं यहां पे सरिया पड़ी हैं माटी पड़ी है।

यहां पर गाड़ी रखी हैं बहुत सारी गाड़ी हैं।

ओ जो तीन लड़के खड़े हैं। सिक्योरिटी गार्ड लिखा है इस और यहां पर --

यहां यह एक गौशाला है और एक दो तीन चार पाँच पेड़ लगे हैं।

यहां पर तीन मशीन रखी हैं और एक इन्टोफ्रेम रखा है।

एक पार्क है यहां पे व्हाइट कलर का घर बना है।

और एक सामने में छोटे सी छोटा सा खिड़की बना उसमें छोटा सा खिड़की लगी है।

और यहां पे कुछ लिखा है ग्रीन कलर का।

और ये गमले भी है लाइट्स भी लगी है।

लाइट लगी है गमले जैसा रखा--

वहां और यहां पर बादल हैं नारियल--

ज्यादातर कि बैटों पर लिखा है टोन ।

और किसी पे एस एस लिखा है रेट भी लिखे हैं।

ज्यादातर और एक फर्श भी है इसमें ब्लू और ब्लैक बहोत सारे हैं।

और यहां पर एक यह एक पार्क है यहां पर कुछ बोर्ड्स है और--

और यहां बहुत सारी गाड़ियां हैं मेडिकल स्टोर स्टोर सब है।

यहां पर एक लड़का फोन देख रहा है दो तीन लड़के खड़े एक कार है।

कुछ बैठी हैं और एक पंखा भी है।

यहां पे बहुत सारे जिम रोड्स के जैसा बना है।

यहां पे हरे बड़े पेड़ है ब्राउन कलर की ट्रेन है।

मतलब की सब लोग और यहां पे बहोत सारी चीजे रखी हैं।

अं बहोत सारे लड़के फोन चला रहे--

एक बोटल है एक बोटल भी पड़ी है।

यहाँ भी बहोत सारे लड़के लड़कियां सब लोग खड़े नहा रहे दो तीन लोग।

ये कोई चीज है मतलब कि यहाँ पे एक यह माल है।

और एक विंडो के जैसा है और सामने देखने पर इधर लेफ्ट खाथ के वो--

अ इधर अ इधर है येलो कलर का बोर्ड है लाइट--

ये फ़ फर्श अह ब्लैक एंड व्हाइट है।

यहां पे परछाई है पेड़ों की।

और यहां पे कुछ बहोत सारे लोग खड़े हैं।

पेट्रोल के डीजल के फ्लोर के ऐसे कुछ है।

और एक दीवाल है उस जिस पे लिखा है श्री राम जानकी मंदिर प्रभा।

देवभूमि जिस अरे बहुत सारी है रेलिंग्स बनी हैं।

ब्लैक कलर का भी बोर्ड लगा है।

औद इसके बगल में मछली की दुकान है। इधर भी चारों तरफ मछलियों की दुकान ही होंगी।

और यहां पर एक सामने देखने पर इस बाँस के घ वो लगे हैं।

डखविन रखा ग्रीन कलर का ए_सी लगी--